पे बहुत कीचड़ है बगल में मकान है सामने बिजली का खंभा है उसके बगल में--

छत डाल डाल के और उसका नक्शा तैयार किया गया है उसपे एक--

तिरंगा लगा हुआ है उस ग्राउंड में बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

बगल में बिल्डिंग है उस भगवान के बीच कोई व्यक्ति--

बना हुआ कुछ शेड जैसे है उसके उस पार बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष लगा--

कुछ खाने का समान रखा गया है।

सब पेड़ पौधा लगा हुआ है हरा भरा दिखाई दे रहा है।